यख भीतर कुछ चादर चुदर छन रख्यां यख मा जी तराजू छ रक्युं एक टोकरा भी छ भीतर रख्युं कट्टा भी छन रख्यां यख मकान का एंच रेलिंग छन खिड़की छ दिखेण लगीं दरवाजा छन दिहेण लग्यां।

यख मा जी एक रोड छा रोड का-मा जी एक बैरवान भी छ चलन लगीं रोड का किनारा मा जी बोर्ड छन लग्यां।

कई सारा डाला भी छन दिखेण लग्यां बिजली का खम्बा छन बिजली का तार छन।

यखमा जी जो च माता रानी कु मंदिर च यखमा जी घंटी च लगीं घंटी मजी लाल रंग की चुन्नी च माता रानी जी की लगीं यखमा जी बिजली का तार छन यख पणा कई सारा हरयां-भरयां डाला बी छन।

यख मा जी झील कु पाणी कठु होन्दु छा यख सामनि मा जी कई सारू बड़ा बड़ा मकान छन यख मा जी एक शहर कर छा यख फण कई सारा मशीन छन बुल्ल डोज़र छन ट्रक छन डम्फर छन यख फण हरयां भरयां डाला भी छन।

नदी छा यख मा जी एक पाणी कु झरना कर छा बैण लग्युं यख मा जी मोटा मोटा ढुंगा छन रख्यां।

यख मा जी कई सारा बड़ा बड़ा ढाडा छन कई सारा हरयां भरयां पहाड़ छन यख बिच फण एक बाटु छ जाण लग्युं।